यहाँ पर कुछ बॉउंड्री जैसा दिया गया है उपर कुछ बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है तथा बोर्ड का कलर लाल दिखाई दे रहा है जिस पर सफेद कलर से कुछ लिखा गया है ।

यहाँ पर कुछ बड़े से पैड पौधे देखे जा सकते हैं जो काफी हरे-भरे दिखाई दे रहे हैं नीचे हरियाली जैसा कुछ दिखाई दे रहा है पीछे एक बड़ा सा घर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जिस --

यहाँ पर कुछ बड़ा सा घर जैसा देखा जा सकता हे जिसके आगे कुछ बैरिकेड जैसे किया गया है इसका घर का कलर सफेद दिखाई दे रहा है तथा इनके बीच बीच में ब्लू कलर से पेंट किया गया है ब्लू कलर का।

इसके ऊपर कुछ हरी-हरी घासें उगी हुई हैं बगल में एक बड़ा सा गेट काला कलर का देखा जा सकता है कुछ बड़ा सा बाउंड्री जेसा दिया गया है दीवाल देखा जा सकता है जिसका कलर --

पिला दिखाई दे रहा है ऊपर लाल कलर का कुछ किया गया है देखि जा सकती हैं।

ये बाहरी सा पानी का जमाव देखा जा सकता है किनारे पर पा कुछ हरी हरी घाँसे घनी देखी जा सकती है जो काफी सुंदर दिखाई दे रहीं हैं।